एक कार और एक गाड़ी खड़ी--

एक गोडाउन में रेत की ढेर रखी गई है।

हूं कि यह एक एनुअल फंक्शन हो रहा है।

कुछ कारें खड़ी हुई है जहां पर--